और अं यहां तो अंम राइस बैग्स हैं कलर कलरफुल का।

बिल्डिंग भी दिखा रही है यहां तो ब्लू कलर का कुछ वॉल्स भी दिखा--

बोड बढ़िया बोड है और बैठने के लिए बेंचस भी है लेकिन लोग कुछ न कोई नहीं है इधर--

ये तो एक मंदिर है नाम है की माता शीतला मंदिर यहां एक पंडित जी बैठके के कुछ कर रही है माता जी का--

ये तो एक फंक्शन का है यहाँ तो हल्दी का फंक्शन अ चल चल चलता हुआ है ये तो --

छोटा पंखा बड़ा पंखा ज्यादा है यहां स्टूल्स पे कुछ रखा हुआ है अंदर सामान भी है पीछे रेमंड का नाम भी दिखा--